यह जैसा लग रहा है कि यहाँ पर म्यूजियम में बहुत सारे लोग बहुत सारे एंटीक पिस को देखने के लिए आए हैं ।

और बहुत सारे घर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहें हैं।

जैसा की हमें यहाँ पर दिखाया दिखाई दे रहा जा ए दिखाई दे रहा है की यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में हैं।

एक प्लेग्राउंड दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारा बाइक लगे हुए हैं और भी कुछ-कुछ लोग वहाँ पर खड़े हो के देख रहें हैं।